वहां पर हमें एक दुकान दिखाई दे रही है जहाँ पर हमें बहोत अ सारे बोर्ड भी लगे दिखाई दे रहे हैं ।

यहाँ पर हमें एक रेस्टॉरेंट दिखाई दे रहा है जहाँ पर हमें दो-तीन लोग खड़े हुए दिख रहे है। एक चौकीदार भी खड़ा हुआ है।

और पीछे की तरफ हमें दो खिड़कियाँ दिखाई दे रहीं हैं। ऊपर हमें दो पंखे दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारे लोग यहाँ कतार में दिख रहे हैं।

यहाँ पर हमे एक और हॉल दिखाई दे रहा है जहाँ पर लड़कियां दीवाल की तरफ हमे एक कतार में बैठी हुई दिखाई दे रहे हैं ।

यहाँ पर हमें मस्जिद दिखाई दे रही है जो की पाँच है।

यहाँ पर हमे एक मकान दिखाई दे रहा है जो की ग्रीन पिस्ता कलर का है और यहाँ पर हमे एक मैंने गेट भी दिखाई दे रहा है ।